जो संतरे रंग का काउंटर है।

हम्म कुछ जेंट्स है कुछ लेडिस भी है गेट के पास में कुछ लेडिस और जेंट्स खड़े हैं।

इसमें कुछ सगवान के पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

सामने में एक बोर्ड लगा हुआ है जो नीले रंग का बोर्ड है । उसपे सफेद रंग से लिखावट की गई है ।

और भी पोस्टर भी लगे हुए हैं अलग-अलग व्यंजनो --

यहाँ पे लेडिस बच्चे जेंट्स सभी आते हैं यह बिहारी का पर्व है।

जो कोट पहना हुआ है चाय दे रहा है।

यहां पर कुछ लोग खड़े हैं बीच में एक फादर है।

यहाँ एक काफी बड़ा प्लॉट खाली दिखाई दे रहा --

यहां पर कुछ पौधे भी हैं सामने में एक चिमनी दिखाई दे रहा है।

कुछ बकरियां सफेद है कुछ भूरी है कुछ चितकवरी भी है |

बकरियों का दूध काफी महंगा मिलता है।

इसमें बैलून से भी कुछ सजाया गया है पीले रंग का बैलून दिखाई दे रहा।

सामने में एक गेट है । गेट के ऊपर लाइट लगी है । नीचे कुछ सीढ़ियां बनी हुई --

बाहर में लाल रंग का कालीन बिछा हुआ है ।

सामने में हरे रंग का एक कालीन बिछाया गया है कालीन के ऊपर एक चक्का रखा गया है चक्के में एक बोर्ड है |

खिड़कियां स्लाइड की बनी हुई हैं । कुछ लोहे की भी बनी हुई हैं ।

दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं ।

सामने मे चिल्ड्रन बुक्स का एक दुकान है।

बाहर में कुछ बाइके और रिक्शा भी लगे --